बलून है यहां पर ग्रीन और व्हाइट तरह के बलून है यहां पर--

यहां एक मिठाई का दुकान है यहां पर एक सेलेंडर है।

में ब्लू कलर की लाइट बर रही है यहां पर ढेर सारे पेर पौधे हैं।

यहां एक मंदिर है यहां पर पिंक रेड और--

और यहां पे ढेर सारे भी और यहां पर पे पेड़ पौधे हैं यहां अभी सुबह का माहौल है यहां पर अच्छी हवा आती है।

यहां पर खाली है और यहां पर ढेर सारे बर्तन है पूजा करने वाले।

यहां एक स्टेट बैंक ए_टी_एम है यहां पर बहुत सारे लोग हैं।